दुकान के अंदर कुछ बल्बे और लाइटें भी रखी हुई हैं।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है।

उलमें कुछ व्यक्ति हाथों में डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं।

और मैदान के अंदर कुछ घास भी जमी हुई दिखाई दे रही है।

ऑफिस के अंदर एक काउंटर भी रखा हुआ है काउंटर के ऊपर दो लैपटॉप भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

और साइड में पैडिया भी बनी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा स्टेशन है स्टेशन में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और साइड में ही बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ हरी घास भी दिखाई दे रही--

यह एक बहुत बड़ी नदी है नदी में तीन बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

और पेंसिल के बॉक्स भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक सैमसंग कंपनी भी है जिसके आस पास बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

और दुकान के अंदर एक कुर्सी भी रखी हुई है।

पुल के नीचे एक पीले कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर शामली लिखा हुआ है।

और एक जैकेट भी रखी हुई है।

जैकेट के बराबर साइड में एक स्टूल भी रखा हुआ है।

यह एक बेड पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक काले कलर की चटाई भी पड़ी हुई है।